फोटो में एक किल्ला नजर आ रहा है।

आ रही है जहां पर बहोत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है और --

यहां पर टेबल और चेयर दिख रहे हैं साथी में टेबल पर टिशु रखा है।